इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे
एक रिपोर्ट बनाएँ
रिपोर्ट फील्ड्स को चुनें लेबल करें और क्रमबद्ध यानि सोर्ट करें
रिपोर्ट लेआउट चुनें और रिपोर्ट प्रकार चुनें स्टैटिक या डायनामिक
इसके लिए चलिए अपने परिचित उदाहरण डेटाबेस को देखते हैं
यहाँ हमने इस लाइब्रेरी डेटाबेस में पुस्तकों और सदस्यों की जानकारी संचित की है
हमारे पास सदस्यों को जारी की गयी पुस्तकों का पता लगाने के लिए एक सूची भी है
हम पिछले ट्यूटोरियल्स में सीख चुके हैं कि कैसे फॉर्म्स और क्वेरीस बनाएँ
यह सीखने से पहले कि रिपोर्ट कैसे बनाएँपहले सीखते हैं कि रिपोर्ट क्या है
रिपोर्ट क्वेरी की तरह ही डेटाबेस से जानकारी पता करने का अन्य तरीका है
हम इसका लेआउट रूप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं जिससे कि यह पढने में और कागज़ पर प्रिंट के लिए सरल हो
रिपोर्ट्स डेटाबेस की टेबल्स और क्वेरीज़ से बना सकते हैं
साथ ही यह टेबल या क्वेरी की सारी फील्ड्स या फील्ड्स के कुछ चुनित समूह को सम्मिलित कर सकते हैं
रिपोर्ट्स के दो वर्ग होते हैं स्टैटिक या डायनामिक
जब भी देखने के लिए एक स्टैटिक रिपोर्ट को खोलते हैं वह हमेशा वही डेटा दर्शाता है जोकि रिपोर्ट बनाते समय उसमें था
इसे स्नैपशॉट भी कहते हैं
किन्तु डायनामिक रिपोर्ट जब भी देखने के लिए खोली जाती है हमेशा डेटाबेस का वर्तमान डेटा दर्शाती है
ठीक है अब एक उदाहरण रिपोर्ट बनाते हैं
लाइब्रेरी डेटाबेस में बाएँ पैनेल पर रिपोर्ट्स आइकन पर क्लिक करते हैं
दायें पैनेल पर उसे विजार्ड टो क्रिएट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं
यह रिपोर्ट्स बनाने का एक सरल और तेज़ तरीका है
हम अब एक नई विंडो देखते हैं जिसे रिपोर्ट बिल्डर विंडो भी कहते हैं और हम एक विजार्ड देखते हैं जिसके बायीं तरफ 6 स्टेप्स लिखे हुए हैं
हम पिछले ट्यूटोरियल में बनाई गयी क्वेरी पर आधारित एक रिपोर्ट बनाने के लिए विजार्ड पर जाएँगे
हिस्टोरी ओएफ बुक्स इश्यूड टो थे लाइब्रेरी मेंबर्स हम स्टेप 1 फील्ड सिलेक्शन पर हैं
हम रिपोर्ट डेटा का स्रोत यहाँ उल्लिखित करेंगे या तो एक टेबल या एक क्वेरी
ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे उपर अपनी क्वेरी हिस्टोरी ओएफ बुक्स इश्यूड टो मेंबर्स चुनते हैं
अब बायीं तरफ क्वेरी में से उपलब्ध फील्ड्स की एक सूची देखते हैं
हम अपनी रिपोर्ट में सारी फील्ड्स चाहते हैं अतः केवल दायीं तरफ के डबल एरो बटन पर क्लिक करेंगे
अब अगले स्टेप पर जाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
स्टेप 2
लैबेलिंग फील्ड्स
लाबेल टेक्स्ट बॉक्सेस में निम्न विवरणात्मक लेबल्स टाइप करते हैं जैसा चित्र में दर्शाया गया है
ठीक है अब नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
हम स्टेप 3 ग्रुपिंग पर हैं
यह तब इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें चुनित फील्ड्स के सेट द्वारा डेटा को समूहीकृत करने की आवश्यकता होती है
उदाहरणस्वरूप हमारी रिपोर्ट में हम डेटा को बुक टाइटल्स से समूहीकृत कर सकते हैं
यदि हम यह करते हैं तब हमारी रिपोर्ट में हम बुक टाइटल देखते हैं और फिर सारे सदस्य जिनको यह दी गयी है
फिर हम अगली बुक टाइटल देखते हैं और इसी प्रकार से
अभी के लिए चलिए अपनी रिपोर्ट को सरल रखते हैं
अतः हम केवल नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे
अब हम स्टेप 4 पर हैं सॉर्टिंग आप्शंस
चलिए डेटा को दिनाँक के अनुसार सॉर्ट करते हैं
और फिर उनको बुक टाइटल के जरिये आरोही क्रम में क्रमबद्ध करते हैं
इसके लिए हम सोर्ट बाय ड्रॉपडाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे और फिर इश्यू डेट पर क्लिक करते हैं
फिर हम दूसरे ड्रॉपडाउन बॉक्स पर क्लिक करेंगे
और फिर बुक टाइटल पर क्लिक करते हैं
अब चलिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
स्टेप 5
चूसे लेआउट
हम यहाँ रिपोर्ट का रूप अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं
चलिए कोलमनार single कोलम्न लेआउट लिस्ट पर क्लिक करते हैं
ध्यान दीजिये कि पीछे रिपोर्ट बिल्डर रिफ्रेश हो गया है
यह सारे लेबल्स को बायीं तरफ और अनरूपी फील्ड्स को दायीं तरफ दर्शा रहा है
चलिए कोलमनार त्वो कोलम्न्स पर क्लिक करते हैं
फिर से नीचे की विंडो दो कॉलम लेआउट दर्शाने के लिए रिफ्रेश हो गई है
इस प्रकार से हम कोई भी लेआउट्स चुन सकते हैं जो बसे विजार्ड उपलब्ध कराता है
हम इसे बाद में अपनी आवश्यकतानुसार बदल भी सकते हैं
अभी के लिए हम पहली चीज़ टेबुलर पर क्लिक करेंगे
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं
ठीक है अंतिम स्टेप क्रिएट रिपोर्ट
यहाँ अपनी रिपोर्ट को एक विवरणात्मक शीर्षक देते हैं बुक्स इश्यूड टो Members रिपोर्ट हिस्टोरी अब अपनी रिपोर्ट बनाते हैं जिससे कि रिपोर्ट हमेशा डेटाबेस से नया डेटा दे
इसके लिए डायनामिक रिपोर्ट विकल्प पर क्लिक करें चूँकि जब भी हम देखने के लिए रिपोर्ट खोलेंगे हम हमेशा नया डेटा देखना पसंद करेंगे
ठीक है हमने अपनी रिपोर्ट समाप्त कर ली
चलिए अब क्रिएट रिपोर्ट नोव विकल्प पर क्लिक करते हैं
और अंततः फिनिश बटन पर क्लिक करें
अब हम एक नई विंडो देखते हैं और यह रिपोर्ट है जिसे हमने अभी बनाया है
ध्यान दीजिये इसमें सबसे ऊपर बोल्ड अक्षरों में फील्ड लेबल्स हैं और असल डेटा सारणीबद्ध तरह से दर्ज है
साथ में यह भी ध्यान दीजिये कि यह इश्यू डेट फील्ड के जरिये आरोही क्रम में क्रमबद्ध है अर्थात दिनांक के अनुसार और फिर बुक टाइटल के अनुसार आरोही क्रम में
अतः हमने लाइब्रेरी के सदस्यों को जारी की गई पुस्तकों की रिपोर्ट दिनाँक के अनुसार बना ली है
अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अपनी रिपोर्ट में कैसे बदलाव करें
यहाँ एक नियत कार्य है लाइब्रेरी में सभी पुस्तकों की एक रिपोर्ट बनाइए जोकि पब्लिशर्स द्वारा समूहीकृत हों
दोनों ही पब्लिशर्स और बुक टाइटल्स को आरोही क्रम में होना आवश्यक है
कोलमनार single कोलम्न लेआउट का इस्तेमाल करिये
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस पर रिपोर्ट्स के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद